कार वॉशिंग होती हैं यहां पर मुझे दो टू व्हीलर खड़ी दिख रही हैं।

यहां पर मुझे वो लड़के के हाथ में मोबाइल दिख रहा है।

यहां मुझे एक कॉलेज की टेबिल लग रही है यहां मुझे एक ब्लैक कलर का बोर्ड भी नजर आ रहा है।

यहां मुझे दो दुकान नजर आ रही हैं।

यहां मुझे वे जार हरे कलर का लग रहा है यहां मुझे जंगली टाइप के पौधे देख रहे--

यहां मुझे कुछ पंखे चालू दिख रहे हैं।

यहां पे कुछ लोग मुझे बैठे हुए दिख रहे हैं।